और लाइट भी दिख रही है।

कबाड में बहोत सारी चीजे रखी हुई दिख रही है।

यहां हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

वर्मन लिखा हुआ दिख रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

सीढ़ी और गैलरी दिखाई दे रही है।

एक कांच का केबिन दिख रहा हैं।

सफेद दीवाल और लाइटें दिख रही है।

एक सड़क दिखाई दे रही है।

उसपर बहोत सारे पत्थर रखे हुए दिख रहे हैं एक ब्रिज भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के नीचे एक दुकान दिख रही है।

एक फ्रिज भी नजर आ रहा है।

यहां हमें एक दुकान दिख रही है।

एक काउंटर लगा हुआ दिख रहा है।

यहां हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

एक बास्केटबॉल नजर आ रहा है।

झाड़ भी नजर आ रहा है।

जिम की मशीने रखी हुई दिख रही है।

और बहोत फुग्गे नजर आ रहे हैं।

एक बड़ा थंबा दिख रहा है और झाड़ भी नजर आ रहा है।

वहां लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की बाउंड्री नजर आ रही है।

दीवाल पर पंखे लगे हुए और घड़ी दिख रही है।

पहाड़ और झाड़ भी नज़र आ रहे हैं।

घास और झाड़ नजर आ रहे हैं।

एक नदी भी नजर आ रही है।